हमें यहाँ एक दिवार दिखाई दे रही है जो भाइट कलर की है और हमें यहाँ बहोत सारी बदक को की --

और हमे यहाँ बहुत सारी जिम की चीजे और एक अंकल दिखाई दे रहे है और हमे यहाँ ब्लैक कलर की चीजे नज़र आ रही है और हमे यहाँ पोस्टर नजर आ रहे है जो कि येल्लो कलर के है।

हमें यहाँ ब्लू कलर के बेड नज़र आ रहे हैंऔर हमें यहाँ गोदरेज अलमारी नजर आ रही हैं हमें यहाँ टेबल नजर आ रही हैं और बहुत बड़ा घर नजर आ रहा आ रहा हैं।

और हमे यहाँ एक झंडे गाड़ने वाला इंडिया का वो नजर आ रहा है।